और उनकी दूसरी तरफ कुछ कार्य वगैरा भी दिखाई दे रही है बस में बहुत सारे लोगों को चढ़े हुए देखा जा सकता है कुछ लोग खिड़कियों पर से चढ़ रहे हैं बस का कलर सफेद है।

इहा पर बहुत सारे लोगों को एक साथ देखा जा सकता है सामने एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक महिला है जिसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और वह झुकी हुई है।

अगल बगल बहुत सारे लड़कों को देखा जा सकता है यहां पर कुछ लड़के हाफ शर्ट वगैरा भी पहन करके आए हुए है।

बस को नीले रंग से पेंट किया गया है ऊपर लाइट की तारें जाती हुई दिखाई दे रही है। और व्यक्ति ने चश्मा पहन रखा है। यह--

और सामने बहुत सारी कुल्हड़ वगैरा दिखाई दे रहे हैं सामने एक डस्टबिन रखी हुई है और यहां पे खाने-पीने की बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं यह एक चा की दुकान है।

सामने एक बस दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक व्यक्ति है और वह चा पी रहा है यह एक चा की दु--